इस फोटो मे एक रोड दिखाई दे रहा है और जिस पर साइकल से और बहोत सारी कारे दिखाई दे रही हैं।

इस फ़ोटो में एक हारमोनियम दिखाई दे रहा है एक हेलमेट रखा हुआ है एक ढोलकी रखी हुई ।

हरी-हरी फसल भी दिखाई दे रही है घास लगी है और यहाँ पर एक नोजल चल रही है जिसमे से पानी आ रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है।